यहाँ फूल का दुकान है फूल लगा हुआ है। एक-एक पौधा एक कुछ बड़ा सा पौधा है एक पेड़ है बहुत सुंदर जगह है। साफ-सूत्रा जगह है। रंग-बिरंगे गेंदे का फूल है।

यहाँ बैंक है यहाँ पर बहुत सारा मोटर बाइक है बालू है सड़क है पीला कलर का घर है यहाँ कुछ आदमी खड़े है नीचे बाइक का दूकान है आसमान साफ है।